की मैं देख पाई यहाँ पे एक बड़ी-सी बिल्डिंग है जोकि भूरे रंग की है और यहाँ पर जो जमीन है वो भूरी और हरे रंग की घांसे हैं।

कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है जिसकी दीवारें ईटों वाली जो कि क्रीम रंग की है यहाँ पे टाइल्स लगे हुए हैं भूरे और क्रीम रंग के यहाँ --

जैसा कि मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे एक कमरा है यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखें हुए है जैसे गिटार ढोलक पियानो और भी यहाँ पे --

कुर्सियाँ रखी हैं जो कि सफ़ेद रंग की है खिड़कियाँ लगी हुई हैं काँच की काँच की के दरवाजे में हैं काँच लगी हुई है।

आसन कर रहे हैं ज़मीन का रंग सिलेटी रंग का है एक नीली रंग की बॉल रखी हुई है बोतल की बोतल रखी है नीली रंग की।